का सीन है और यहाँ पे नदी है दो गाय है नहा रहे हैं और --

मस्जिद है जहाँ लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं बहुत दूर-दूर से आते नमाज़ पढ़ने बैठे हुए भी हैं और यहाँ का कालीन भी साफ़-सुथरा और बहुत अच्छे हैं यह मस्जिद भी बहुत अच्छा है जो सारी सुविधाए यहाँ पे है ।